जैसे की आप देख सकते हैं की यहाँ पे बहोत सारे बतक दिखाई --

और कुछ दार्शनिक लोग हैं जो इनको देख रहे हैं इनको प्रोत्साहित कर रहे हैं।

जो भी चाहिए जो भी आपको पढ़ना हो हर तरह के यहाँ पे आपको --

जैसे की आप देख सकते हैं की सामने एक लड़की है जो अपने नृत्य का प्रदर्शन कर रही है।

यहाँ बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए है और मैदान यहां के एकदम साफ है।

झूलें लगे हुए हैं जहाँ बच्चे आते हैं झूलते हैं।

जैसा कि आप देख सकते है कि यह एक काफी बड़ी शॉप है जहां डेटोल शैम्पू मैगी येपी --

डॉक्टर लाल पैथलैब्स है और ये ऑथराइज कलेक्शन सेंटर है।

यहाँ पे दो पूल बने हुए है अ उधर साइड शहर --

अंदर बहुत सारे चेयरस हैं काफी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे यहाँ पे बहुत ही प्यारी लाइटिंग है यहाँ पे किसी की शादी हो रही है।

अरे बारिश के टाइम पे भुट्टे भुज के खाए जाते है जो कि --